ई एगो पार्क है जिमे कुर्सी रखल गईल बा ई साँझ के समय बा ईमें पेड़ उड़ बा बल्ब भी जलता ई साँझ के समय है हैं कुर्सी उर्सि सब रखलगई बा।

इ दुल्हा के कार हेय जोन एकदम बढ़िया से सजाइल गेलबा --

ई एगो गाड़ी बनावे वाला दुकान है इमे कोनो मोटरसाइकिल वोटरसाइकिल बन जाएला इमे एगो मिस्त्री काम करातारा जो मोटरसाइकिल बनावा तारा।

आ जेकर मोटरसाइकिल वू साईड बेठलवा आ ओकरा पीछे में मिस्ट्री का दुकान बा जेमे सब मोटरसाइकिल बनावे वाला समान रखल गईल बा।